साथ ही यहां पर एक फैन रखा हुआ है।

साथ ही वहां पर स्पीकर लगे हुए हैं।

साथ ही यहां पर हरे भरे खेत भी हैं।

वह दो लेडीज सफेद कपड़े पहने हुए हैं।

बहोत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख--

उस दीवार पर बहोत सारी साड़ियां लगी हुई--

मुझे यहां पर एक नदी दिख--

जिसके बाहर एक महिला फोटो ले रही--

मुझे यहां एक रेस्टोरेंट दिख--

मुझे यहां पर एक कारखाना दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

मुझे जहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

सड़क के किनारे एक बैंक है।